यह एक ढाबे का दृश्य है। जहाँ पर बहोत ज्यादा टेबल और कुर्सियाँ रखी हुई हैं। यहाँ लोग बैठ कर खाना खाते हैं।

यह एक फुव्वारे का दृश्य है जो कि अलग प्रकार से बनाया हुआ है। इसमें तीन लाइटें लगी हुई हैं गुलाबी रंग की।

पेड़ हैं। पेड़ के पास में बोहोत सारे ईंट के चट्टे बने हैं। ईंट बड़ी-बड़ी हैं।

सफ़ेद बिल्डिंग है पीला रंग का एक पोस्ट है खम्भा भी है उसके उपर लाइट लगी हुई है।

पेड़ है रोड है। रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है लोग खड़े हैं। रेलिंग पे पत्ते हैं पार्क है पार्क में काफी तरह के फूल हैं।

रोड है। रोड के ऊपर बाइक खड़ी है। ईंट है ईंट के चट्टे हैं लाल रंग की बिल्डिंग है बाइक खड़ी है पेड़ है पेड़ की हरी पत्तियां हैं।

पेड़ है। पेड़ की पत्तियाँ हैं। रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के अंदर लाइट है।

यह नदी का जल हरा है ओर कुछ लोग शायद यहाँ वोटिंग और कर रहे हैं। मुझे इक नाव और दिख रही है।

यह मुझे एक यूनिवर्सिटी का दृश्य लग रहा है यूनिवर्सिटी पर सफ़ेद रंग का पैंट हुआ है।

इं घर का है जोकि हबीब बन रहा है। इस पर आज रेंटर डाला जा रहा है। कई --

यह कान्हा जी और राधा जी की तस्वीर है और यह बड़ी प्यारी लग रही है इस पर फूलों की माला --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

और इसने पैंट के हुक में एक इंची टेप को टाक रखा है और इसने हरे रंग की जैकेट पहनी --

बंद जैसे और साइड में कुछ और मक्का रखी हुई हैं।